जहां पे बहोत सारे बाइक लगाए हुए नजर आ रहे हैं।

और अंदर बहोत सारे चीजें रखी हुई नजर आ रही हैं।

यह दृश्य में एक कार नजर आ रही है।

उस व्यक्ति ने अपने लेफ्ट हैंड में वॉच पहन रखी है।

और वे व्यक्ति व्हाइट और ब्लू कलर की टी शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहा है।

यहां पे जे_सी_बी जैसी मशीनें नजर आ रही हैं।

जिस बच्चे के हाथ में पाइप है और उस बच्चे ने ऑरेंज कलर की टी_शर्ट और क्रीम कलर की पैंट पहनी हुई है।

और उसी पार्किंग के बाहर एक घर भी नजर आ रहा है जिस घर के गेट का कलर ब्लैक --

और उसी के पास एक व्यक्ति भी खड़ा नजर आ रहा है और ब्लू कलर का अल्बेस्टर लगा।

और इस रेस्टोरेंट के बाहर बहुत सारी मिरर भी लगी हुई है और इसके सनरूफ टॉप पे एक छतरी भी दिखाई दे रही है।

इसके अंदर एक व्यक्ति बैठकर अपने काम करते हुए दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में एक सोफा भी दिखाई दे रही है और उसी के बगल में लगी हुई लाइटें भी नजर--

और उसी के नीचे कुछ बाइक और स्कूटी पार्क हुए नजर आ रहे हैं।

यह दृश्य में एक म्यूजिक एंड आर्ट क्लास दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य मे एक बस स्टैंड नजर आ रहा है।

जहां पर एक व्यक्ति बस के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहा है।

जिसके बाहर एक गेट लगी हुई नजर आ रही है जो कि ब्राउन कलर की है।

जहां पे एक बड़ा स्लिम लेदरस का बैनर भी दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में एक वेडिंग प्लेस नजर आ रही है।

और उसी बाउंड्री के ऊपर कुछ कपड़े भी टंगे हुए नजर आ रहे हैं।